यह एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है ऊपर बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है फूल मालाओ से सजा हुआ दिखाई दे रहा है।

गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे है गुब्बारे नीला एवं सफ़ेद दिखाई दे रहा हैं टॉवल रखी हुई दिखाई दे रही हैं शीशे लगे दिखाई दे रहे हैं।

हे दे रही है कार खड़ी दिखाई दे रही है बाइके खड़ी दिखाई दे रही है पैड पौधे दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा आसमान काला नीला दिखाई दे रहा है।